हॉस्पिटल के पास हम देख सकते हैं छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी हैं उसके साथ यहां पे एक फोर व्हीलर खड़ी है प्लस --

और इसके अलावा आप बाहर देख सकते है यहां पे तीन जेंट्स खड़े एक जेंट्स का फेस कवर है बाहर स्कूटी बाइक भी खड़ी है।

और इसके ऊपर जो ब्रिज है वो भी आप देख सकते हैं आस पास जो पहाड़ी इलाका है वो भी काफी प्यारा लग रहा है।

यहां हम देख पा रहे हैं एक बहोत बड़ा घर है घर के पीछे हम देख पा रहे हैं कि दो तीन शटर दुकानें बनी हुई है और उनमें एक तो आई_सी_सी --

बैंक है और उसके अलावा हम देख पा रहे हैं एक लेडीज बैंक की ओर खड़ी है और आस पास बाइक --

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पे कच्चा ब--

हमें दिखाई दे रहा है पीछे में आसपास घर भी दिख--

जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पे खुला एरिया है और इस खुली एरिया में कुछ थोड़ा सा टीन शेड कर रखा है।

आप देख सकते हैं खुद ही और हम आसमान की तरफ देख सकते हैं वहां का नजारा कितना प्यारा है।

और यहां पे उसके साथ बेंच भी लगी हुई है और इसके दीवारों पे देखो पीकॉक कितना प्यारा लग रहा --

एक डॉक्टर बैठे हैं और आस पास आप देख सकते हैं फैन वैन है उनका फेस उन्होंने छुपा रखा है।

हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कैसे गमले में छोटे छोटे से पौधे लगाए हुए हैं और हमें चेयर यहां पे दिख रही है।

और यहां पे डेकोरेशन देख लीजिए कितना प्यारा है।

यहां हम देख पा रहे है ये एक बहुत ही खुला मैदान है यहाँ पे सभी बच्चे अपने अपने स्कूल यूनिफॉर्म में एक साथ खेल रहे हैं।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

और इसमें जो लाइटिंग है वो बहोत प्रिटी लग रही है आस पास हम देख सकते हैं लेडिस और जेंट्स दोनों दिख रहे --

यहां हम देख पा रहे है यहां पे काफी सारे लेडिस और जेंट्स हमें आते हुए दिख रहे है और उनके हाथ में हम देख पा रहे है बड़े बड़े डॉल है।

और यहां पे देख लीजिए कितनी सारी बुक्स हैं अलग अलग तरह की और तीन लड़के हैं जोकि यहां पे खड़े हो के बुक्स देख रहे हैं।